यहाँ फर्श पे कई सारे गिटार दिखाय दे रहे है जिस में ब्लू कलर तथा यलो कलर और स्लेटी कलर --

चार मंजिला एक स्कूल दिखाई दे रहा है जिसपे हौली मिशन पब्लिक स्कूल ब्लू कलर से लिखा है।

एक मल्टी दिखाई दे रही है जिसमे ऊपर कई सारी खिड़कियाँ बनी है जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है नीचे यहाँ येलो कलर की दिखाई दे रही है इसमे तीन बड़े-बड़े दरवाजे दिखाई दे रहे है जो कि रेड कलर के है।